ऊपर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपे एक बोर्ड लगा है जिसपे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है नीचे की तरफ दुकान दिखाई दे रही है जहां पर रैक रखी हुई है रैकों में सामान रखा है बाहर की तरफ लोग खड़े हुए हैं।

पीछे देखने पर एक अ आकृति बनी हुई जो कि जिसके सारे चारो तरफ रेलिंग बनी हुई हैगाड़िया दिखाई दे रही है गाड़िया जा रही है।

एक किला दिखाई दे रहा है जिसका गुंम्बद दिखाई दे रहा है उसके दूसरी और जाने पर किले कि बाउंड्री के साथ साथ पहाड़ी दिखाई दे रही है जहाँ पर मोटी-मोटी चट्टानें --

बीच में छोटा दरवाजा दिखाई दे रहा है सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है नीचे का फर्स दिखाई दे रहा है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपर खिड़कियां बनी हुई हैं।

यहाँ पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है जिसपे दिवार दिखाई दे रही है जिस पर आकृति बनी हुई है पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि पीले रंग की है।

लड़कियां दिखाई दे रही हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर हरे हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग कि है जिसपे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है आकृतियां बनी हुई है बड़ा दिवार दिखाई दे रही है जिस पर लाल और पीले रंग पर्दे टंगे हुए हैं।

यहां पर मजार दिखाई दे मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद सफेद रंग की जिस पे सफेद रंग की गुंबद बना हुआ है चोटी दिखाई दे रही है आकृति बनी हुई है जो की हरे रंग की है। नीचे कुछ--

सड़क दिखाई दे रही है सड़क के दूसरी और देखने पर एक महल दिखाई दे रहा है जिसपर गुंबद दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही हैं दुकानें दिखाई दे रही हैं दुकानों पर बोर्ड लगे हुए हैं लोग दिखाई दे रहें हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि लाल रंग कि शर्ट पहने हुए है।

एक किला दिखाई दे रहा है जिसकी की दीवार दिखाई दे रही है द्वार बने हुए है ऊपर जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है दीवार दिखाई दे रही है।

पीछे देख ने पर गोलनुमा आकृति बनी है द्वारो पर कुछ बोर्ड लगे गए है निचे का फर्श दिखाई दे रहा है और ये बहुत पुराणे का किला बना हुआ है।

देखने पर मीनारे दिखाई दे रही हैं जिसपे गुम्मद दिखाई दे रहा है चोटी दिखाई दे रही है नीचे खिड़की दिखाई दे रही है।

ऊपर एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहां सीढिया बनी हुई है चटाने दिखाई दे रही है चट्टानों के बीच में जाते हुए तार दिखाई दे रहे है पीछे देख ने पर --